अच्छा हे अंदर भी मस्त पढ़ाई होती हे यहाँ पर इधर भी खिड़की उडकी हैं बाहर भी खिड़की हैंउधर सब --

यहाँ पर अ अ सुई उई लगाया जाता हैं ईधर बाहर भी अच्छा अच्छा हैं यहाँ पास कुर्सी हैं यहाँ पास हैं यहाँ पास --

घर हैं उर हैं सब हैं यहाँ पर अच्छा अच्छा अच्छा लगता हैं यहाँ मेरेको आई --